कुछ लड़कियां ऊपर खड़े होकर बतख को देख रही है सामने पानी भरा हुआ है।

अं रूम का कलर हल्का क्रीम कलर का है एक ए_सी भी लगा हुआ है एक विंडो भी लगा हुआ है विंडो में कांच लगा है दरवाजा भी है।

बहुत सुंदर दिख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि--

और बहुत बड़ा मैदान भी है चारों तरफ हरे भरे पेड़ है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक दुकान की है।

इस तस्वीर में जो फोटो यह एक तालाब की है।

तस्वीर में जो फोटो है यह एक पेट्रोल पंप की है।

मैदान के सामने एक बिल्डिंग है उसमें बहोत सारी खिड़कियां हैं।

फूल का पेड़ भी है और ये नजारा रात का है।